यहां पर शादी हो रही है।

खेतों में स्प्रे करने के टैंकर बनाए जा रहे हैं।

इस रूम में यहां पर बहुत सारी मशीने रखी हुई है।

कुछ ऊपर लाइट भी लगी हुई है भी निकट रही है।

और में पी_ओ_पी का बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है।

और यहां पर जाल भी बना हुआ है एक रेड कलर का यहां पर मैट बना हुआ है।

और यहां पर बहुत सी रिक्शाए खड़ी है।

लोहे का खंभा नीचे को झुका हुआ है।

नाज हैंडी क्राफ्ट का एक बैनर लगा हुआ है।

यह गणपति जी भगवान का मंदिर है।

यह एक खाद बीज की दुकान की दुकान है।

यह एक बीयर कि दुकान है।

और यहां पर एक बीच में कुर्सी भी लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारी बाइके खड़ी हुई है।

यहां बैठने के लिए दो कुर्सी है एक हरे रंग की है और एक ग्रे कलर की है।